यहाँ पर एक बंगला दिखाई दे रहा है उसे दो खिड़कियाँ भी हैं दो कार है दो एक मोटरसाइकल भी दिखाई दे रही है आ वो बंगले का घर अंदर का दरवाजा खुला है और --

अ बंगले को कलर किया हुआ है वा एक पाइप भी दिखाई दे रहे है।

मासा हुआ दिखाई दे रहा है वो एक अ शहर वि अ दिखता दिख रहा है और वहाँ पर बहोत सारे पेड़ भी दिखाई दे रहा है ।